रोड जेसा दिख रहा है ग्रे कलर में दिखाई पड़ रहा है यहा ढलान पे पत्थर लगे हुए है जो की ग्रे कलर में दिखाई पड़ रहे है पीछे पहाड़ जेसा दिखाई पड़ रहा हैं।

खेत दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे मिट्टी ब्राउन कलर की दिख रही है सामने टैक्टर आते हुए दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर साइड में वाईट कलर के खंभे लगे हुए है।

सूरज चमकता हुवा दिखाई पड़ रहा है जो की ओरेज और यल्लो कलर में दिखाई पड़ रहा है यहा पे सामने ग्राउंड जेसा दिख रहा है पीछे कुछ मकना बने हुए है यहा पे दीवारे वाईट कलर में दिखाई पड़ रही है यहा पे साईड में पेड़ ब्लेक रंग के दिखाई पड़ रहे है यहा पे समने एक मकान और दिखाई पड़ रहा है।

यहाँ पे सामने कुछ तार जाते हुए दिख रहा है वहा पे एक खम्बा भी लगा हुआ दिखाई पड़--